जन की फोटो मा जी आप तें दिखेण लग्यां कि यख मा जी एक बहोत ही बड़ु मैदान छा जख मा जी मोटा मोटा ढुंगा भी छन रख्यां।

जन की फोटो पर आप तें दिखेण लग्युं कि यख मा जी एक नदी छ जाण लगीं अगाड़ी बिटिन आप तें पाणी कु फवारा भी होलु दिखेण लग्युं।

अर जैकेट भीं छ पैरीं अपड़ा कंधा पर बैग लेके छ जाण लग्युं अगाड़ी बिटिन आप ते डाला बुरदा भी होला दिखेण लग्यां यह फोटो पहाड़ की छ लगण लगीं।